और छोटा सा पौधा भी गमले में नजर आ रहा है।

और वहाॅं पर खिड़कीयां नजर आ रहीं हैं ए_सी नजर आ रहा हैं बहोत सारी--

शॉप नज़र आ रही है उसके अंदर बहुत सारे शूज रखे गए हैं।

एक मैट दिख रहा है जो की क्रीम कलर का है और वहां पर कुछ टैप दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं।

एक येलो कलर का स्टॉपर नजर आ रहा है और गेट ब्राउन कलर का नजर आ रहा है।

दीवारों पर पिक्स लगी हुई हैं और बहुत सारी लाइटें ए_सी --

तो हॉस्पिटल का बोर्ड लगा है और वहां पर एट फोर्टी सिक्स नंबर प्लेट भी लगा हुआ है और--

गोल्डन कलर फ्रेम में बड़े बड़े चार शीशे नजर आ रहे हैं और चार ब्लैक कलर की चेयर्स नजर आ रही हैं।

एक आदमी नजर आ रहा है जिसने की हरे रंग के कपड़े पहने हैं वो गेट के अंदर जा रहा है और मिट्टी नजर आ रही है।

मुझे एक लॉन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा है उसने--